एक गाड़ी के आगे का पाट पूरा टूटा हुआ है इसका कलर ब्लैक है।

एक बेड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वाइट कलर का बेडशीट बिछाया गया है।

पीछे रेस्टोरेंट में एक लड़का है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है।

इसके ऊपर कुछ फूलदान रखे गए हैं।

इस बैंक की साइड में कुछ दुकानें हैं।

यहां पर एक नाव दिखाई दे रही है।

एक त्रिशूल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

के ऊपर बहुत सारे फूल के माला रखे गए हैं आदमी ने ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

एक आदमी है जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

कुछ कुर्सियां रखी गई है जिनका कलर ब्ल्यू ब्लैक और रेड है।

कुछ मशीने रखी गयी हैं।

एक ए सी दिखाई दे रही हैजिसका कलर व्हाइट है।

जिसका कलर रेड है जे_सी_बी के आगे का बोनट झुका हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

के साइड में एक पिलर है दिखाई दे रहा है। एक ब्लू कलर का दीवाल है |

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

पेट्रोल पम्प में एक गाड़ी खड़ी है जिसका कलर पीला है।

एक औरत ने हरे कलर का साड़ी पहना हुआ है।

स्टेज के ऊपर बहुत सारी लाइटें जली हुई हैं।